टेबल पर एक लाल रंग का लैपटॉप रखा हुआ है।

गाड़ी के अंदर आदमी बैथा हुआ है।

इस पिक्चर पर हमें बहुत सारे चूड़ियां दिखाया गया है।

चूड़ियों को दो हिस्सों में बाटा गया एक प्लाईवुड के मदद से --

रास्ते के किनारे पर एक बड़ा सा कोकोनट का पेड़ है।

दीवारों पर पोट्रेट्स लगे हुए हैं।

और आगे में एक बुद्ध स्टैचू भी है।

बिल्डिंग का कलर ब्लू है और उसका गेट स्टील से बना हुआ है।

नदी के किनारे बहुत सारे घास दिख रहे हैं।

ये फोटो एयरपोर्ट का बाहर का व्यू है।

घर का छत और दीवार टीन से बना हुआ है।

इस फोटो पर हमें एक सड़क दिखाया गया है।

सड़क में एक हाथी और एक गाड़ी भी दिखाई दे रहा है।

इस फोटो में बहुत सारे लोग दिखाए गए हैं जिनमें से दो प्रीस्ट हैं।

ऑटो का रंग पीला और हरा है।

किनार पर पेड़ भी लगे हुए हैं।

कुछ औरत है और कुछ मर्द है।